एक बिल्डिंग है हरी कलर की घास है काफी सारे पेड़ है लगता है कोई महल है ऊपर बादल दिख रहे है पेड़ के नीचे क्रीऐट किया गया है ।

कार का कलर सफ़ेद और काला है काफी अच्छी लग रही है सामने उसके हूटर लगा हुआ है खाली जगह में रखी है।

गुमतपर खंबे लगे हुए है जाल बिछा हुआ है पीछे बादल दिख रहे है बादल का कलर आसमानी है अंदर का कलर हरा नीला है।

सामने काफी अच्छा इमेज है।